एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है जिसने हरी शर्ट पहनी है।

डेकोरेट डेकोरेशन गुब्बारी लगाए गए है जोकि ब्लू एंड व्हाइट कलर कलर के है।

लोगों ने एक ने पीले कलर की टी-शर्ट पहनी है ब्लू कलर व्हाइट कलर एक ने --

लगाई गई है और काफी सारी मशीने यहां पर रखी हुई हैं।

जो की एक कुर्सी पर वो टेबल पर वर्क कर रहा है कुछ लिख रहा है।

और उसके बाहर भी कुछ पेड़ लगे हुए हैं। कुछ अंदर भी लगे हुए हैं।

और एह यह ए.टी.एम. के आस-पास अम --

उम्म एटीएम का गेट रेड कलर का है जिसमें कांच का फ्रेम लगा हुआ है।

क्योंकि बोहोत सुंदर लग रही है। रेड कलर की यह दीवाल से पेंट किया गया है। व्हाइट कलर से इसमें डिजाइन बनाई गई है।

यह एक सड़क एरिया है जहां पर एक सफेद कलर की बस खड़ी हुई है।

अं ऊपर दीवार में रेड और वाइट कलर के कुछ कार्टून जैसे लटकाए गए हैं।

ऑरेंज कलर का इसमें पेंट होता गया है और ब्लू कलर के यहाँ परदे लगाए गए हैं।

देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर एक मंदिर का बड़ा सा गेट बना हुआ है सड़क के पास --

अमेजिंग एक्सचेंज़्स लिखा हुआ है।

यहां पर कोई कार्यक्रम चल रहा है |

ऊपर रेड पर्दे लगाए गए हैं रेड और ब्लू --

यह किसी कार्यालय का रूम है जहां पर म्म बहोत सारी टेबल रखी हुई हैं कुर्सी रखी हुई हैं।

रीलें लगी हुई हैं।

इसके ऊपर रेल की पटरी निकली हुई है और बिजली के तार यहां पर निकले हए हैं।

और ये बिजली की तार भी लगी हुए हैं।